ये रेस्टो उसके सामने देखो कि बिल्डिंग के बाजू मे देखो कुछ बिल्डिंग है उसके सामने देखो दो तीन वैन जा रही है रस्ते मे।

देख सकते हो कि एक शॉप मोटर गैरेज है शुभ मोटर गैरेज उसके बाद सामने देखोगे कि--

देख सकते है एक मोबाइल की दुकान है ये साहिल मोबाइल गैलरी जहां देखो काउंटर में आपको रखा हुआ एक मोबाइल उसके बाजू में एक लड़का है जो खड़ा हुआ काउंटर पर बात कर रहा है।

देख सकते हो की रसोई घर है जहां पार्टी का काम चल रहा है। जहां देखो कि कुछ लोग हैं। टैक्टर रखाया गया है हाउस --

देख सकते हो कि एयरपोर्ट है एयरपोर्ट में देखो की एंजियो इन इंडिका एन_जी_ओ --

किस लाइटें ये जा रही है जहां देखो कुछ लोग हैं जो अं जो हाउसकीपिंग --

पीछे देखो कि आगे आगे करके बकरी के बाद बच्चे भाग गए हैं एक बकरी का बच्चा बैठा हुआ--

अ कार्टून आर्टून रखे हुए जहाँ देखो की ये रेल्वे ट्रैक की है। ऊपर देखो कि ये पूरा एक मसीन का--

कुछ लोग जो हाथी की पूजा करते कुछ लोगों हाथी को नहला रहे है देखो की कुछ लोग हैं जो हाथी को पानी से नहला रहे है।

देख सकते हो कि एक किराने की दुकान है ये किराने की दुकान में देखो कि चिप्स रखे हुए हैं मैगी रखी हुई है बमबिटा फाइव स्टार अब देखो कि एक--

एक ठो खरगोश वाले बने हुए वाइट पिंक एंड देखो दूर दूर तक गमले रखे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।